मुझे इस दृश्य में एक खूबसूरत सा बगीचा दिखाई दे रहा है।

इधर विद्युत से जलता हुआ बल्ब एवं खंभा भी दिखाई दे रहा है।

एक यह लकड़ी का मेज एवं लकड़ी का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

एवं पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है।

तथा एक गमले में छोटी मछलियां भी रखी गई है।

अनेक कलर के फूल एवं गमले में फूल लगे हुए दिखाई दे रहे--

अतः एक बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

बैग भी रखा हुआ है जिसमें अनेक कलर के डब्बे वस्तुएं रखी हुई--

एवम बहुत सारे पेड़ पौधे तथा विद्युत का एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।

तथा चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा सफेद प्लेट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस दृश्य में बहुत सारे खाने के सामाने दिखाई दे रही हैं।

शरीर नापतोल करने वाला भी वस्तु दिखाई दे रहा है।

मुझे इस दृश्य में एक बहती हुई नदी दिखाई दे रही है।